इस पिक्चर में एक बिल्डिंग है। या शायद मंदिर है एक।

एक काफी सारे फूल और काफी सारे बैकग्राउंड में कुछ फूल्स और वर्कर लोग हैं जो काम पे लगे हुए हैं| लगता है किसी की शादी की या पूजा की बड़ी फंक्शन है।

इस पिक्चर पे एक बुकस्टोर है। और दुकानदार बैठे हुए है। कुछ बुक्स है।

इस पिक्चर के बैकग्राउंड पे एक विद्यान्ता हॉस्पिटल है।

जिस पे कुछ पेड़ लगे हुए हैं| शाम का वक्त है और साइड में एक लाइट भी जल रही है जो वाटर टैंक वो पिंक और येलो कलर की पेंट की हुई है।

मंदिर पुरानी स्ट्रक्चर जैसी लग रही है।